ये बैठा हुआ है पंखा लगा हुवा है और देखने में ये बहोत अच्छा लग रहा है और एक चर्च का मूर्ति है जो दीवाल पे चिपका हुवा है और --